बिल्डिंग में तीन दोस्त बैठे हैं साथ में दो कपड़ों में एक शर्टलेस है एक ब्रिज है पानी है और दूर तक बहुत अच्छी बिल्डिंग और प्लांट्स ट्री दिख रहे हैं।

यह देखने से किसी घाट का इमेज लग रहा है जहां पर एक डग सो रहा है बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन बहुत ज्यादा प्लांट से यहां पर ट्रीज देंगे बड़े-बड़े--

अ अ आदमी टायर में हवा चेक कर रहा है एंड कुछ प्लांट्स पेट्रोल पंप के बाहर रखें फॉर द डेकोरेशन पर्पस |